लोहे का एक पूल बना हुआ दिख रहा है। एक पहाड़ दिखा रहा है।

सड़क दिखरही है। ऊ छे छोटी-छोटी चिमनिया दिख रही हैं। एक बड़ा ड्रम दिख रहा है।